इस इस तस्वीर में एक ग्रिल दिखाई दे रहा है जहां पे बच्चे लोग खड़े हैं।

यहां पे लास्ट साइड में लोहे लोहे के कुछ बनाए गए हैं जो चरखुट हैं।

यहां पे कुछ पोल भी दिखाई दे रहे हैं अब सामने में घर और ढेर सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ कार्टून भी नीचे में रखा गया है एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पे एक बार्बर एक बच्चे की बाल काटता हुआ दिखाई दे रहा है एक बड़े ब्लैक कुर्सी प--

एक साइड चारों तरफ एक कुर्सी लगाई गई है ऊपर में एक झंडा भी लगाया गया है।

पास ही में एक अंकल साइकल से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बाहर में ढेर सारे मूर्ति बनाये गये है भगवान के जो काली मां का है।

कॉलेज का गेट ब्राऊन कलर का है कॉलेज के गेट के पास एक पोल भी गड़ा हुआ है और एक लाइट भी लगाया हुआ है।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

वह खो खो खेल रहे हैं और कुछ लोग बैठे हुए भी हैं और कुछ लोग उनको चियर भी कर रहे हैं।

आसपास में पूरे यह शांत जगह है और बड़े बड़े जंगल भी है इस साइड और यहां पर बच्चे लोग सेफ जगह पे खेल रहे हैं।

यहां पे ढेर सारे फूल लगे हुए हैं जो दिखने में काफी प्यारा लग रहा है।

यहां पे ढेर सारे बाइक और एक बड़ा सा रोड और एक बड़ा सा प्रोजेक्टर भी दिखाई दे रहा है।